यहां घूमने का एक पार्क है जिसके सामने ऊंची ऊंची इमारतें लोक रही हैं।

इसमें बड़े बड़े पत्थर भी है और इसमें पहाड़ भी है।

यह एक स्टेड है जिसपे साउंड कई रखी हुई है।

इसकी टीशर्ट ब्लैक कलर की है और उसकी पैंट व्हाइट कलर की है।

इसमें से एक व्यक्ति पैसा निकाल कर बाहर निकल रहा है।